यहां सामने मुझे एक लोहे का रोड दिख रहा है उसमें लाइट्स लगी हुई है।

सब दुकानें को ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बैनर लगा हुआ है।

यहां सामने मुझे एक हॉल दिख रहा है बड़ा सा हॉल में ऊपर बहुत सारा लाइट्स लगा हुआ है काउंटर बने हुए हैं।

और लाइट्स लगी हुई है निचे टेबल रखे हुए है चेयर --

और टेबल पे पानी की बोतल रखी हुई खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

ट्रांसपेरेंट गेट लगे हुए है अंदर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

जो जिसपर अ रेड कलर का छत बना हुआ है पीछे बहुत सारे--

नीचे मार्बल बिछी हुई है गेट दिख रहा है और गेट लकड़ी का गेट बना हुआ है।

और गार्डन में सोलर सिस्टम लगा हुआ है।

बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी सामने--

सड़क दिख रही है बिल्डिंग दिख रही है सामने पेड़ दिख रहा है।

और पोस्टर लगा हुआ है खिड़कियां दिख रही हैं।

और ये सीढ़ियां बनी हुई है सीढ़ियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं पूजा हो रही है।